रंग जो है वो काला है और मुख़्तलिफ़ किस्म की बोरियाँ पड़ी हुई हैं जिनमें मुख़्तलिफ़ असिया पड़ी हुई हैं।

ये फूलों की दुकान है जिसमें मुक्तलिफ किस्म के खूबसूरत --

मेज रखी गईं हैं बहोत ही खूबसूरत मंजर लग रहा हैं।

इमारत का रंग हल्के कलर का है और इसमें बहुत सारे भी है।

वर्जिस के सामान मौजूद है और लोग अपनी-अपनी वर्जिस कर रहे हैं और एक लड़का बैठा --

जब कि दूसरी स तरह बहुत सारे लोग बेंचो पे बैठे हुए हैं और एक पुल भी बनी हुई है जो की क्रॉस करने के लिए है।

इस तसवीर में लोगों का बहुत बड़ा इजतमा है जिसमें लोग झूम रहे हैं नाच रहे हैं तबले बजा रहे हैं।